और ये शूटिंग के सामान --

बहोत अच्छा ही सेटअप लगा हुआ है यहां का।

सेंटा क्लॉस का और सब कोई सेंटा क्लॉस का टोपी पहने हुए हैं।

और यहाँ पर इतने सारे मिरर के बगल में लाइट लगे हुए हैं ऊपर से लाइट यहाँ पर सिर्फ ज्यादातर लाइट लगा हुआ है।

और यहां पर का खिड़ --

काम कर रहे है कि और बाहर से दिखता है कि सब लोग पैसे जमा कर रहे है।

यहां पर बच्चो का पंजीकरण होता है यहां पर पंजीकरण खंड और स धर्मशाला लिखा हुआ है।

और ये किसी म्यूजिकल शॉप है किसी का।

और वहां पर बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियां है।

उसके पीछे किसी किली देवता का फोटो है।